पीछे एक और कार खड़ी है। वो कार को कपड़े से ढका गया है।

यहाँ बहुत सारे पत्थर हैं। उसी के नीचे एक काली टीशर्ट में आदमी है।

पत्थर के ऊपर एक ब्लू का एक जूता दिखाई दे रहा है।

सामने एक काले कलर का ऑटो खड़ा है। वो ऑटो के बाहर दो आदमी है। एक आदमी नीचे बैठा है।

आगे एक काले कलर की बाइक खड़ी है। एक आदमी जा रहा है और एक बुढ़ही अम्मा भी --

सामने ब्राउन कलर की बड़ी सी दीवार है। दीवार के नीचे बा बड़े-बड़े काफी पत्थर रखे गए हैं।